और एक आदमी खड़ा है जो फोटो ले रहा है लेडीज अपने बच्चे को लिए है और हाथ में एक पर्स है। और दूर --

यहाँ पर एक ब्रिज बना हुवा है और निचे एक नदी है और--

ये शाम का टाइम है सूर्य का प्रकाश आ रहा है और पानी में सूर्य की परछाई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक अकैडमी बनी हुवी है सामने अकैडेमी का बोर्ड लगा हुवा है आजुबाजु बहुत सी--

सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा हैऔर यह सभी सामान लोहे का बना हुआ दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है और पेड़ को पुताई करी गई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक छोटासा घर बना हुवा है जहाँपर इ केंद्र खुला हुवा है यहाँ पर एक बाइक रखी हुवी--

सभी प्रकार के फूल लगाए गए है और एक अच्छी आकृती बनाई--